ये बस स्टेंड है एक इ ए पी एस आर टी सी बस है ये जाने वाली और कुछ यात्री बेठे हुए हैं मुझे लग रहा है।

ये मेन है जोकि अपने रुमाल काफी बांध केअपनी फोटो खींच रहा है सलून पर। ये कुछ कार्यक्रम हो रहा है मुझे लग रहा है।

ये काफी अच्छा नृत्य कर रहे है अपने भारत के लिए।